ट्रक के ऊपर भी कट्टे रखे हुए है।

ताखा के बाहर की तस्वीर है।

एक आदमी गेट को पकड़े हुए खड़ा है।

यहां बच्चों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और स्लेटी कलर की पैंट और लड़कियों ने ब्लू कलर की शर्ट और नीचे स्कल्ट डाली हुई है स्लेटी कलर की।

कुछ आदमी ग्राउंड के बीच में बैठे हुए हैं।

नीचे की तरफ एरो है।

इस इमेज में चार टीचर हैं।

एक रिक्शा है और पे एक पेड़ है।

यह एक खाली मैदान है।

और पीछे वाला हिस्सा रेड कलर का है।

बाजे लिए हुए हैं हाथ में।

एक आदमी ने ब्लैक कलर का पर्स डाला हुआ है।

जहां सड़क ईंटों की है।

ग्रीन ग्रीन घास के पीछे कुछ पेड़ हैं।

ये एक रेस्टोरेंट के अंदर की तस्वीर है।

जिसका नाम आदर्श पेन क्लीनिक एंड पैलेटिव केयर सेंटर है।

हिंदी में नाम आदर्श दर्द निवारण एवं प्रशासमक सेवा केंद्र है।

यहां कागजों पर कुछ किया जा रहा है।

ऊपर एक लेडिस जो सॉल ओढ़े बैठी है।

इसमें लकड़ी का बॉक्स खुला हुआ है।

जिसकी बैनर पर लिखा है गोवर्धन टूरिस्ट शुद्ध वैष्णो भोजनालय।

सारी चेयर पड़ी हुई है।

मका मकान पर व्हाइट कलर का--

ये एक पहाड़ पर बैठे हुए व्यक्ति की इमेज है।

क्योंकि बहुत बरे एक दिख रहा है यहां बस्ती है।

चश्मों की और घड़ियों की शॉप है।

ऑरेंज ब्लैक ब्लू ग्रीन आदि कलर ।

साइड में गेट लगा हुआ है।

नीचे कुछ कच्चा है कुछ में ईटें बिछी हुई है।

वहां एक स्टूल पड़ा हुआ है।

एक बॉक्स में लाइट लगी है।

और एक साइड में टेबल है।